ओल स्टेशनरी का सामान तथा करियाने--

ये एक ऐसा घर है यहां पीला--

पेंट किया हुआ है तथा सात--

की बेस्ट लेडिज --

इस तस्वीर में आप को लैब --

बच्चे मन लगा--

टायर दिखाई दे रहे है ये--

नारायण इलेक्ट्रिक वर्क्स भी दिखाई दे रहा--

बोहर की छत है।

एक बुक सेंटर --

गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक की--

हुए दो व्यक्ति की तस्वीर दिखाई गई है।

यहां पर योगा--

इस तस्वीर में आप को एक--

पार्क दिखाई दे रहा है जहां पर लोग--